गिलासें रखी हुई है और यहां साइड में एक कट्टा रखा हुआ है और यहां अलमारियों में गिलासें रखीं हुई हैं।

और उत दी तालाब के दूसरी साइड वहां पर--

लोहे की बेंच बनी हुई है जिसपर गुलाबी शर्ट और गुलाबी कुर्ते मे और एक पीली शर्ट मे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

सफेद कलर की दीवार बनी हुई है और इसके जो पिल्लर है वो लाल कलर के बने हुए हैं।

और नीचे एक ब्लैक कलर का सोफा रखा हुआ है।

कुछ फोटोकॉपी करने फोटोकॉपी मशीन के--